ऊपर की तरफ तारे गयी हुई है। टी_वी_एस लिखा हुआ है बोर्ड पे --

कुछ एक महिला है और उसके पास छोटी बच्ची खड़ी है और आदमी खड़ा है। हरे रंग की --

नीचे की तरफ कंचन वस्त्रालय लिखा है। एक दाम की दुकान।

लड़के के त टी टी का --

और दिवलो पर भी लगी हुई हैं। यहाँ पर कुछ शीशे की आलमारियां बनी हुई हैं।

यहाँ पर गौतम बुद्ध की पीले रंग की मूर्ति बनी हुई है। नीचे के तरफ कमल खिला हुआ है। कमल के ऊपर बैठे हुए दिख रहे है।